लाइट वगैरह भी लगा है यहाँ पे।

और यहाँ पे एक काम कर रहे हैं मैंकेनिक और ये कुछ निकाल रहे है।

मोमोज वगैरा मतलब सब्जी व का दुकान है ये। बहोत बढ़िया दुकान है। आ के --

पीछे दो ई-रिक्शा खड़ी है। क्या आइसक्रीम वाला है और ये बहोत बढ़िया रोड भी बहोत बढ़िया है।

एयर है यहाँ पे और आगे मतलब एक फोटो रखी हुई है।

यहां पे शादी वगैरह हो रहा है। वो मैरिज हॉल है। यहां पे चेयर रखी हुई हैं। एक टेबल है।

यहां पे आ आ शादी उदी करना हो तो आजाईऐ यहीं पे ।

ये मंदिल है और ये मंदिर बहोत पुराना है। यहां से बहोत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और यहां पर एक नारियल का पेड़ है।

ये मतलब एक शॉप पे रखी हुई है मूर्ति --

कोई दिक्कत नहीं है एकदम कलरफुल मंदिर है।

और कुछ भी चीज मतलब खराब हो जाए तो वापस भी हो जाएगा जिस मतलब शॉप से आप ले जाएंगे।

पेंटिंग की जा रही है बहुत बढ़ियां कार है ये --

और एक ये लड़का है। इसका मतलब बोहोत बढ़िया लड़का है ये। पीछे मतलब फोटो मतलब खींचवाया है।

फ्लावर है पीछे और जींस पहना है पीछे। ऊपर बाल ओल बहोत बढ़िया है।